जिनके हाथो में लोहे वाली रोडो को जोड़ने के लिए ए वेल्डिंग मशीन हाथो में लिए हुए है और वे एक दुशरे से अगल कम कर रहे है।

यह कच्ची-पक्की हुई लीची है जो पत्तों के साथ रखी गई है और यह एक थाल में रखी गई है कुछ लीचिया ऊपर टंगी भी नजर आ रहे हैं।

ये केक काले कलर का है और इसमे चॉकलेटस तरासी गयी है और ए-एक छोटे से कार्ड रखा हुआ है जिसके सामने एक कुर्सी लंबी सी कुर्सी नजर आ रही है।

बीच में एक लंबा-सा पौधा भी नजर आ रहा है जो काफी छोटा है और हरियाली हरे से लेकर पीले रंग तक की नजर आ रही थी।

यहां एक ट्रे नजर आ रही है जो कि स्टील की है और इस स्टील में बहुत सारी जलेबियॉ रखी हुई हैं जिनका कलर पीला है।

यहाँ पर हमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल नजर आ रहै हैं | यहाँ पर कुछ नीचे डली हुई मालाएं ये भी नजर आ रही है जो की काफी लम्बी है | यहाँ पर पीला कलर के फूल है माला ये ज्यादातर पीला और लाल कलर से बनी हुई हैं ।